पर एक नदी दिखाई दे रही है नदी के किनारे अ नदी नदी दिखाई दे रही है नदी के किनारे कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहा पर एक घर दिखाई दे रहा है घर के सामने एक टंकी सी बनी हुई है नीचे जिस जिसमे पानी भरा हुआ है वह दिखाई दे रही है।

यहा पर सीढ़िया बनी हुई है ऊपर जा यहा पर सीढ़िया बनी हुई है जो दिखाई दे रही कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है एक रेलिंग बनी हुई है बह दिखाई दे रही है बह दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ लगे हुए है वे दिखाई दे रहे है यहा पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है यहा पर कुछ पानी बेह रहा है जो दिखाई दे रहा है पहाड़ों के नीचे से।

दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ सुखी घास लगी हुई है जो दिखाई दे रही है।

यहा पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में लकड़ी रखी हुई लकड़ी रखी हुई है वे दिखाई दे रही है कुछ पक्षी कुछ जानवर बैठे हुए है जो दिखाई दे रहे है दो खंबे गड़े हुए है वे दिख रहे है।